जिसमें से दो लड़कियों का कपड़ा पहनाया गया है और एक लड़के का कपड़ा पहनाया गया है।

यहां पर बहुत सारे बेंच लगे हैं।

टेबल में ग्रेनाइट और स्टील के पैर लगे दिख रहे हैं।

टेबल के ऊपर कटोरी और चम्मच रखे गए हैं।

इसके द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति लगी है।

मसीन पर एक माला भी लगा दिख रहा है।

जिसमें बहुत सारे सोफा रखे गए है ।

यहा एक पेड़ भी दिख रहा है।

तालाब के चारों तरफ काफी भीड़ है।

घर का रंग नीला और गेट का रंग भूरा है।

बहुत सारे लोग स्टॉल पर खाते हुए भी दिखाई दे रहे--

सामने वाली दीवार पर एक छोटी सी घड़ी भी दिख रही है।

इसका मकान लाल और हल्का पीले रंग का है।

इसके बगल में एक बैग की भी दुकान है।

यह इलाहाबाद बैंक का तस्वीर है।

और बाईं ओर एक घड़ी भी लगा दिख रहा है।

इसके काउंटर पर प्रिंटर भी रखा है ।

इसके बाहर दो तीन चापाकल भी रखे हैं।

इसके सामने बहुत सारे मोटरसाइकल खड़े हैं।

इस तस्वीर में हमारे शहर में स्थित मॉल बिग बाजार को दिखाया गया है।